पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप में दो ठो झंडा एक येलो एक वाइट कलर का लगा हुआ है।

यह एक होटल है होटल के हाल को सजाया गया है।

एक शादी हॉल है और शादी हॉल के गेट को--

अह को सब फूलों से सजाया गया है।

पॉलिश करने का भी लिक्विड मिलता है।

एक लेडीज भी बैठी है छोटे से बेबी को लेके और--

ये स्कूल का एक रेसिंग दौड़ ग्राउंड है इस ग्राउंड में दो तीन बच्चे दौड़ रहे है रेसिंग लगा रहे है।

साइड में बहोत सारे फूड वैगरा खाने के लगे हुए है।

और यहाँ लेडीसो कि हर प्रकार की पर्स बच्चों के खिलौने बच्चों के कॉम्बॉक्स बच्चों के लिए चॉकलेट --

और बहोत सारे आइटम है जो हमको दिख रहे--

पहाड़ों के बीच में एक झरना जा रहा है।

चक्का जाम हो रखा है आटे के अंदर एक आदमी बैठा हुआ--

अंगूठी वैगेरा रिंग वैगेरा कांच के अंदर लगे हुए हैं।

कई प्रकार के फ्लावर के छोटे छोटे हैं।

उसके पार्ट्स में कारों वॉश भी किया जाता हैं।